उसपे एक बच्चा है उसके बाजू मैं एक आदमी बच्चे को लेकर खड़ा है।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

एक मच्छी मार्केट दिख रहा है। कुछ आदमी यहा पे--

और पुतले यहा पे खड़े रखे हुए है।